इसके ऊपर एक बिल्डिंग नजर आ रही है उसमे दिवार का रंग गुलाबी नजर --

यहाँ पे एक सड़क नज़र आ रही है सड़क के पास एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बहार एक स्कूटी खड़ी हुई है जिसका रंग पीला नज़र आ रहा है।

दुकान के बगल में दो आदमी खड़े हुए है एक इस्कूटि पर बैठा हुआ है जिसने --

बगल में पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो का हरा नजर आ रहा है आगे थोड़ा कर्व भी --